फसल लगी हुई दिखाई दे रही है खेत में पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रही है।

पैलेस के बहार गेट में दो गार्ड बैठे हुए--

नजर आ रही हैं और एक थंबा लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें के--

जिसके पास एक लड़का बाइक पर खड़ा दखाई दे रहा है और दो लड़कियां --

रखा हुआ नजर आ रहा है गुरुद्वारे में टाइलों का फर्श लगा हुआ दखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक छड दिखाई दे रहा है।

टेबल पर कम्पूटर भी पड़ा हुआ नजर आ रहा हैं दफ्तर में लगे हुएं हैं।

दे रही हैं और लाइटों वाले झूमर--

इस पिक्चर में हमे एक मार्केट देखाई--

दिखाई दे रहे हैं और गार्डन में झूले भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दे रहा है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

मे औरतें और पुरुष बैठे हुए दिखाई दे रही--

दो पास्टर बैठे हुए और एक पास्टर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

रही हैं टेबल पर कुछ प्लेटें --

हाले पे पेड़ लगे हुए दखाई दे रहे--